यहां पे एक हवेली हे हवेली के ऊपर दो एक डंटा रखा हुआ है।

यहां एक स्प्रे बोतल रखा हुआ है और एक मग रखा है।

यहां पे स्कूल का दृश्य है जिसके अंदर बहुत सारे चटाई बिछाई हुए हैं।

कुछ चटाई पीले रंग के हैं कुछ चटाई उजले रंग के हैं।

गाड़ी के चार चार दरवाजे हैं दो दरवाजा खुला हुआ है।

आदमी और बहुत सारे खड़े हैं और उनके हाथ में डंडा है जिसके ऊपर आग जल रहा है।

में एक घर के बगल में लोहे का दंटा है जहां पे कुछ आदमी गमछे लिए हुए हैं।

काले रंग के हैं एक गाड़ी के ऊपर हेल्मेट रखा हुआ है।

पीछे में कुछ लकड़ी छोटे-छोटे रखे हुए हैं।

यहां पे दो गाड़ी है एक लाल रंग का है एक काले रंग का है।

यहां पे पौधे बहुत सारे हैं यहां हल्का जमीन है।

और कुछ फ्लावर लगे हुए हैं जो पिंक कलर के हैं और कुछ उजले रंग के हैं।

और बहोत सारे पेड़ हैं और आसमान भी साफ है।

यहां एक टायर का पोस्टर चिपकाया हुआ है जिस पे हाई माइलेज ऑफ लिखा हुआ है।

एक चेयर हैं चेयर के ऊपर लाल कलर का कपड़ा लगा हुआ हैं।

नीचे में बहुत सारे महिला पुरुष और बच्चे हैं।

बोतल बहुत सारे यहां पे हैं और कुछ डब्बे हैं।

यहां पे दो महिला और चार आदमी हैं।

एक महिला के हाथ में झोला है और उसके हाथ में फोन है।

बहुत सारे पेड़ हैं पेड़ के ऊपर कुछ पोस्टर हैं।

बगल में एक घास चिपकाए हुआ है दीवार पे जो हरे रंग का है।

यहां पे एक टेबुल है जिसके ऊपर चेयर है।

बस के डंडे हैं यहां बगल में एक खिड़की और है।

यहां पे एक आदमी है जो चेयर पे बैठा हुआ है।

जिसके ऊपर एक क्लियर लिखा हुआ है एट येट जीरो फाइव लिखा है हावर्स लिखा है।

पेड़ के ऊपर कुछ पत्तियां है और ऊपर में आसमान में कुछ बादल दिख रहा है।

डोम्स लिखा हुआ है एक बॉक्स के ऊपर।

गाड़ी के अंदर बहोत सारे तार है और कुछ पाइप है।

यहां एक बस है और एक कार है।

यहां बस के अंदर बहोत सारे आदमी है।

यहां एक आदमी है बाहर में धूप की रोशनी पड़ रही है ।